सामने एक स्टूल पड़ा हुआ है।

स्टेज पर बहोत सुंदर सजावट की गई है और--

लोग खड़े हैं और कुछ बच्चे--